अपने अपने देश के आदर्शों का खयाल रखना चाहिए।

और वहां पर फूल पोधे और दरख्त होते है।

ये परिंदे मुझे और मित्र मेरे मित्रों को बहुत ज्यादा पसंद हैं।

अपने देश के लिए और अपने सपने सच करने के लिए अपनी सेहत को बहुत ज्यादा --